इस फोटो में मुझे पुरुष गन्ना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रैक्टर एन_सी_बी दिखाइ दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।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

इस में मुझे हॉल दिखाई दे रहा है।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

बाइके खारी दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुश लोग दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे मन्दिर दिखाई दे रही है।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

काम है मुझे बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं।